इस फोटो में ऊपर लाइट लगी हुई है सफेद दीवार है। यहां पर काफी भीड़ है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नीले रंग का शटर दिखाई दे रहा है।